आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा गुफा है यहाँ पर सीड़ी भी बहुत ज्यादे है और यहां घास-फूस भी है हरा-भरा और पेड़-पौधे भी है हरा-भरा मस्त दिख रहे हैं यहाँ गुफा भी है।